ये क्लोथ शॉप है जोकि एक पुतला खड़ा है इसकी कपड़े बहुत ही जबरदस्त लग रही हैं पीछे कुछ गर्ल्स वेगरा के फराक वेगरा रखा हुआ है।

एक झील है जोकि ऊपर से पानी आ रहा है जोकि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ स्टोन वगेरा रखा हुआ है।

और ये टेबल बगेरा लगा हुआ है पाइबर्स है चेयर्स है यह आदमी सब शायद शॉपिंग करने के लिए आए होंगे।

ये भी नई का दुकान है ये सायद लग रहे है ये आदमी जो खड़ा है ये मालिक होंगे।

जो भी है ये तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है शायद इसपे छत-वत पर चढ़ने के लिए होंगे।

लाइट लगा हुआ है और ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है ये ढोल मैं भी बजाता हूँ बहुत ही अच्छा है।

ये कुछ गेरेज का समान वगैरा लग रहा है।

और इधर साइड से कुछ समान-उमान है इसपे ये कुछ थेला वगैरा रखा हुआ है और ये चप्पल का भी फोटो आ रहा है ।